इस तस्वीर मैं आप देख सकेंगे आप को एक बहोत बड़ी नदी नज़र आ रही है नदी मैं बहुत पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मैं आप देख सकते है आपको एक मस्जिद का मीनारा बना हुआ दिखाई दे रहा है जो काफी खूबसूरत बना हुआ नज़र आ रहा है।